और भी अन्य चीजें टंगी दिखाई दे रही है नीच इस सामने मीटर दिखाई दे रहा है ऊपर पोस्टर भी दिखाई दे रहा है जो लाइट से --

एक मकान दिखाई दे रहा है जिसमें एक दो तीन ह कमरे दिखाई दे र --

नीचे भी कुछ छतें दिखाई दे रही हैं कुछ लड़के खड़े हुए दिखाई दे रहें हैं कुछ सफेद कलर का प्रिन्ट दिखाई --

कुछ आगें लेडिस बैठी हुई चैन से दिखाई दे रही है एक लेडिस खड़ी हुई दिखाई दे रही है और बड़े-बड़े पेड़--

बहुत बड़ा ग्राउन्ड दिखाई दे रहा है एक साइड से रोड भी दी दिखाई दे रहा है कुछ लोग नोहरे दिखाई दे रहे है कुछ बाइक पर कुछ साइकिल पर दिखाई दे रहे है।